जा रही है। दे आर ए फाइव मेम्बर्स एंड ए लीडर वन इस गाइडिंग देम ।

एक पर्सन है जो उनसे क्वेश्चन कर रहा --

गुड इवनिंग एवरीवन एस यू केन सी दिस इमेज जहां पे हुंडई की कार रिप्रेजेंट गई है।

लेटेस्ट न्यू ट्रेंड कार --

बहोत सारेएए मजदुर यहाँ पर काम कर रहे हैं पीछे भी दिया गया है।

एस यू केन सी धीस एक मस्जिद की इमेज है जहाँ पे --

एक ये एक ब्यूटीफुल सी एक इमेज है। यहाँ पर एक रिवर दिखाई दे रहा है। ऊपर में साइड में ब्रिज दिखाई दे रहे हैं एंड देअर इस ए वेरी ब्यूटीफुल --

एस यू केन सी जहा पर मेकडॉनल्ड्स का शॉप किया गया है लाइन से कार --